यहां पर एक गाड़ी आया और लाल कलर की कलर की गाडी आया।

और यहां पर ऊपर वह दो चार खिड़कियां लगी हुई है।

और यहां पर एक हो रखी प्रेस सी।

यहां पर बहुत अच्छे स्कूल के बच्चे हैं और नीचे ड्रेस पहने--

यहां पर बहुत अच्छे अच्छे यहां पर सेफ रखी हैं और यहां पर शीशे भी रखे हैं।

यहां पर सामने दो तीन टम्पू खड़े हैं और बड़ी मार्केट है।

जो कि उनकी वीडियो बना रहा है।

यहां पर तीन गाड़ियां हैं बड़ी बड़ी।